एक जिम का हॉल देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही बड़ी है।

और उसके पीछे बहोत सारे लाइट्स जल रहे है। एवम बिजली की बहोत सारे तारे भी है।

और वहां पे दो कंप्यूटर भी नजर आ रही है और वहां पर एक काले रंग की कुर्सी है।

और उसके ऊपर बहुत ही घने जंगल हैं और वहां पर बहुत सारे लोग हैं।

और वहां पर बहोत सारी गाड़ियां चल रही है। बाइक स्कूटी एवं एक--